यहां पर हमारे सामने कुछ बच्चियां हैं जिन्होंने सफेद कलर की फ्रॉक पहन रखी है।

यहां पर हमारे सामने केक रखे हुए है नीचे फ्रीजर है जिसमे आइसक्रीम और कुल्फिया रखे हुई है कुछ चॉकलेटी कलर की है कुछ सफेद कलर की है।

निचे फर्श है जिनमे छोटे-छोटे टाइल्से लगी हुई है उसके अलावा उपर खुला आसमान है।

हमारे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है। दे --

चॉकलेटी ब्राउन कलर का है उसके अलावा उसपे भवन लिखा हुआ है और भी लिखा हुआ है जो सिल्वर में है उसके आलावा सामने एक छोटा सा गार्डन है जो हरे कलर का है।

सामने ट्यूबलाइट लगी हुई है एक बल्ब लगा है सामने एक छोटी-सी टी.वी. है।

के आलावा व्यक्ति है जो खड़े है सामने गाड़िया है जो खड़ी हुई --

और बहुत सफेद कलरस और इंग्लिश में लिखा हुआ है सामने एक लोगो भी है और पीछे बैकग्राउंड हरे कलर का है।

हमारे सामने फर्श है जिसपे छोटे-छोटे टाइल्स लगी हुई हैं उसके आलावा सामने --

ईट के है जिनमें खिडकियाँ है दरवाजे हैं सामने डंडे हैं ऊपर टावर है। ऊपर --

यहाँ कुछ दरवाजे है जो लाल कलर के है कुछ बना हुआ है सामने और खुला आसमान है सामने पेड़ है।

यहां पर हमारे सामने एक बहुत पुराना मंदिर है जिसमे बहुत सारे सीडीया हैं।

उसके आलावा सफेद कलर की ट्यूब लाइट --